इसके अंदर कुछ हिरने घास खाती दिखाई दे रही है।

सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिन्होंने दो ब्लैक कार दो व्हाइट कार है एक स्कूटी भी जाता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है एक मोटरसाइकिल पर जाता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है।

यह एक शॉप दिखाई दे रही है जिसके अंदर ब्लैक कलर की एल_सी डियां रखी हुई है।

पास एक आदमी खड़ा हुए हैं व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहने हुए ऊपर दुकान का बोर्ड लगा हुआ है कुछ लोहे की रिंग्स लगी हुईं है रास्ते के ऊपर --

एक बंदा किस बंदे के बाल काट रहा है ये नीले कलर कि शर्ट पहनी हुई है।